ये मकान जो है बहुत अच्छा लग रहा है चर्च देखने में --

यहाँ पर एक नद नदी है पोखर है।

अच्छा लग रहा है फूल और हत हर तरह का फूल रखा हुआ है यहां पर यहां जो है गुलदस्ता भी --

एक पुतला भी बनाया हुआ है जो कि देखने में जो है बहोत अच्छा लग रहा है।

क-कुट्टी लगाया हुआ है छिटटा में देकर यहाँ पे घर भी है जोकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पर जो है एक बस भी खड़ा हुआ है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एक अंकल भी है जो फोटो खींचा रहे है मोबाइल हाथ में रखे हुए है लाल शर्ट पहने हुए है।

बहुत बड़ा नदी भी है यहाँ पर जो है पेड़-पौधे बहुत हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है।